कैमरे से फ़ोटो घीच रहा है ।

यहाँ पर हम देख रहें हैं कि गेट के पास --

पक्षी हैं। पक्षी को --

दो लड़कियां है वो दीप लेके खड़े हैं। इधर-उधर देख रहीं हैं। बगल में --

दो गो पाईट दो गो पाया हैं।

ये वेडिंग स्टेज है दोनों तरफ लगे हुए हैं।

हम्म बच्चे हैं। लड़कियां लड़कियां आपस में कुछ बना रहीं हैं।